इ दिखाई दे रही है यहां कुछ बहुत सारे मकान भी दिखाई दे रहे है आसमान यहां से सफेद नजर आ रहा है बीच में ही एक खंभा लगा हुआ दिख रहा है यह रास्ता--

गार्डन दिखया दे रहा है यहाँ रस्ते में टाईल्स लगी दिखाय दे रही है यहाँ से असमना --